और यहाँ पे आदमी सुबह सुबह जिम कर रहे हैं बैठके यहाँ पे गर्ल्स बॉयस दोनो हैं।

मंदिर दिख रहा है मंदिर में लाइट लगा हुआ दिख रहा है।

शीशा मे रखा हुआ दिख रहा है यहां पे फूल का डिजाइन गुलाब के फूल का दिखा है हरा कलर का फूल कटा हुआ है।

यहा पे खिड़की मे बास लगा हुआ दिख रहा है यहा से दिख--

और पत्थर वत्थल दिख रहा है खूब नीचे पानी व्हाइट कलर की गिर रहा है आसमान दिख रहा है आसमान का कलर नीला दिख रहा है।

फिर नाला दिख रहा है। नाला में पानी है। बुकिंग कंट्री लिखा हुआ दिख रहा है। पेड़ पौधा दिख रहा घर दिख रहा घर के ऊपर हरा कलर लगा हुआ है।

सी_सी_टी_वी कैमरा सामने में लगा हुआ दिख रहा है वहां पे ऊपर व्हाइट कलर से पेंट किया गया--

यहां पे टेबल दिख रहा है और ये ये मंदिर के ऊपर से लाइन का तार गया हुआ दिख रहा है।

यहां पे जिम क्लास दिख रहा है जिम लइके जिम करते हुए दिख रहे है पंखा दिख रहा है बॉल दिख रहा है यहां पे।

टाइल्स उइल्स लगा हुआ दिख रहा है ये आदमी मास्क लगाए हुए दिख रहा है।